इमारत में खिड़की दवा दरवाजे बहुत है और यहाँ पर जालियां लगाई गयी है जालियों का रंग काला है और इमारत के बाहर एक पड़े भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे सफेद रंग के वाहन नज़र आ रहे हैं और इन वाहनों के खिड़कियों का रंग काला है | वाहन के आसपास पेड़-पौधे और कुछ इमारतें दिख रही हैं | यहाँ बीच में एक बड़ा सा खम्बा भी है।